यहां पर एक घर है जो लाल रंग का है पीछे नारियल के बड़े-बड़े पेड़ है।

- घर के सामने गाड़ियां खड़ी है जो टू व्हीलर है काले रंग की है वो और आदमी लोग भी खड़े हैं जिन्होंने नीले पीले--

जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हैं कुर्सी पर एक सफेद रंग के कपड़े पहन के आदमी बैठा है।

और यहां पर लाल रंग का कमान है बाजू में लाल रंग के बोर्ड लगाए गए हैं बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग भी--

और घर के बाहर पत्थर भी पड़े हुए हैं बाजू में छोटे छोटे घास आए हुए हैं आसमान भी दिखाई दे रहा हैं वायर भी--